यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग है चार पांच ठो बिल्डिंग है जो देखने में बहुत ज्यादा--

बहुत बड़े-बड़े मछलियाँ रहते हैं इस तलाब जिसे मछुवारे लोग पकड़ते हैं बाजार मे बेचते--